और इसके बगल में इस इसके बगल में एक घर है जो की काफी सुंदर दिखने में लग लग रही है। यहाँ पे होम्योपैथिक की दवाई भी मिलती है।

इससे जो बनाने वाले है बनाते है वो उत्साहित बहुत होते है ताकि इनको भुखमरी की स्थिति नहीं बनती।

और इसमें मूर्तियो में कपड़ा अ लगा पहनाई हुई है और इसके आगे सीरियां सीढ़ियां हैं |